यह एक पार्क है यहां पार्क में झूला लगा हुआ है यहां पर सभी बच्चे आते हैं और खेलते हैं।

यह व्यक्ति आ के वॉकिंग भी करते हैं यह पार्क शहर के बीच में है जिसे सभी आते हैं और मनोरंजन करते हैं यहा सभी बच्चे आ के खेलते हैं।

यह एक ऑफिस हैं यह ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और यह--

उनके सर का ऑफिस हैं यहाँ लैपटॉप भी रखा हुआ हैं जिसमें ऑफिस का इंचार्ज काम करता हैं और--

यहाँ सभी विषय पढ़ाए जाते हैं और यह सभी विषयों के छात्र आते हैं जैसे वाणिज्य भूगोल सभी--

याह केफे मोती ताला पारा में स्थित है यहाँ पर सभी आते हैं और खेलते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज मिलती है जिसे व्यक्ति को पसंद आता है।

यह एक गुफा है यह गुफा पर्यटक स्थल है यहां सभी आते हैं और पर्यटक घूमते हैं।

यह जगदलपुर का बलदेव स्टेट हैं यहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पर सभी लह रहते हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पर रेस्टोरेंट में डेकोरेशन किया गया है और यहां पर येलो कलर की लाइट है जिससे डेकोरेट हुआ है ।

कलर इतना प्यारा दिख रहा है की बहुत सुंदर दिख रहा है प्रकृति का रूप यह बहुत आकर्षक है ।

यह एक ग्राउन्ड है यह ग्राउन्ड मे सभी आते है और क्रिकेट फुटबॉल मैच खेलते है।

यह एक मैदान है यहाँ मैदान में सभी आते है और खेलते है कूदते है और जिसे गाड़ी सीखना है वो गाड़ी भी सीखते है ।